और छोटी छोटी घासें भी लगी हुई हैं।

और कुछ बकरियां चारा खा रही हैं।

और बहो लाइट बलफ़ लगा हुआ है बट अभी जल नहीं रहा है नीचे टाइल्स लगी हुई है।

बाटल भी रखा गया है उसके नीचे सी_पी_यू भी रखा गया है।

यहां पे इलेक्ट्रॉनिक समान का रिपेयरिंग करते हैं।

और टाइल्स भी लगाया गया है। और बाहर के तरफ सीढ़ी भी है सीढ़ी पे रेलिंग लगी हुई है।